इस ग्राउंड में ग्रीन कलर की घास लगी हुई है।

यहाँ पर हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहाँ इस बिल्डिंग की बॉर्डर पर बहोत सारे लाइन बाय लाइन पेड़ लगे हुए हैं।

और यह बिल्डिंग का शेड मरून और क्रीम कलर का है।

यह एक प्राकृतिक दृश्य दिख रहा है।

पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस बिल्डिंग में ऊपर की तरफ तीन गुंबज दिख रहे हैं।

रेस्टोरेंट के शटर्स ओपन हैं और यहां पर कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स भी रखी हुई दिख रही हैं।

ताश लटकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

बेंचेस पर और सोफे पर कुछ ब्यायज बैठे हुए हैं।

इस पहाड़ी क्षेत्र के बीच में से एक बहोत ही सुंदर सी--

यहां हमें एक गेम जोन दिखाई दे रहा है।

और यहाँ एक व्यक्ति चेयर पर बैठा हुआ दिख रहा है।

यहां पर बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पर के_जी_एन चिकन प्वाइंट एंड ऐग सेंटर लिखा हुआ--

यहां पर दु व्यक्ति बाहर की तरफ आते जाते दिख रहे--

यहां एक गेराज दिख रहा है जिसमें दो टायर और कु--

और यहां पर बहोत सारी चेयर्स लाइन बाई लाइन जमी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस पर लिखा है इंदौर एक्टिंग स्कूल ।

युवराज ढाबा एवं फेमिली रेस्टोरेंट का--

इस ग्रॉसरी शॉप में ऊपर की तरफ एक बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है मां योगवशरी डेली नीड्स एंड जनरल स्टोर धार ।

यहां पर एक नई कार पार्क की गई है।

इस कार के पीछे कुछ लोग खड़े दिख रहे हैं।

और कुछ लोग यहां बैठ कर ब्रेकफास्ट करते दिखाई दे रहे हैं।

सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

कुछ महिला बैठ कर बांते करती हुए दिखाई दे रही है।

यहां दो चेयर्स भी रखी हुई दिख रही है।

यहां हमें एम_पी ऑनलाइन का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

जोकि एक शॉप पर लगा है जिस पर लिखा है राहुल हाइड्रोलिक ।